ये एक आरती बुक सेंटर दिखाई दे रहा है हमको यहां सभी प्रकार के पुस्तकें मिलती हैं।

यहाँ पर नगर पंचायत से संबंधित जितने भी --

जहां बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ हरे पौधे लगे हुए हैं।

और खुसनुमा माहोल रहता हैं लोग यहाँ विचार--

यह एक गार्डन है गार्डन में अलग-अलग तरह के सो पेड़ यहां पर लगे हुए हैं।

साथ ही छोटे-छोटे सुंदर पौधे भी यहां पर लगाए गए हैं।

यहां पर रास्ते में बैठने के लिए सीमेंट से बने यहां पर सीट बना हुआ है।

सामान खरीदने के लिए और वो सामान अपना --

कलरफुल आसमान दिखाई दे रहा है हमको।

सामने एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमें एक छोटी सी मूर्ति है।

जहाँ पर अलग - अलग कंपनीया भी बैट के ऊपर में लिखा हुआ है।

डेली नीड्स के सामान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सामान हमको यहाँ पे मिल सकते है ।

और यहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से सिग्नल का प्रयोग करके आदमी लोग जो है अपने-अपने रास्ते पर इधर-उधर जाते रहते हैं।

अपने-अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं टेबल में सामान रखा हुआ है डिजाइन भी बनाया जा रहा है ।

यह एक क्वाटर है जहाँ पर अलग- अलग प्रकार के डिज़ाइन के घर बने हुए हैं।

अलग - अलग रंग से घरो को पोतवाया गया है।

यहाँ पर बिजली खम्भा भी बना हुआ है जिसपर ट्रांसफर लगा हुआ है।

ये एक विकल गाड़ी का वर्कशॉप लग रहा हैं।

वहां पर दिख रहा है एक गाड़ी खड़ा हुआ है और दो आदमी निलक के --

यहाँ पर बच्चे जो है अपनी प्रतिभा अपनी कला प्रदशित कर रहे है यहाँ पर--

ये एक बड़ी -सी मछली है जिसको रिक्शा में पकड़ कर लाया गया है इसकी लम्बाई लगभग --

आदमी लोग जो है इसको देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं।

अंश दीप हौंडा यहाँ पर हौंडा कंपनी के जितने भी गाड़िया है इस शोरूम से खरीदी एवं बिक्री कि जाती है ।

पार्क में यहाँ पर एक लक्ष्मण झूला बना हुआ है।

पत्तो को कचरो को एक जगह इकट्ठा करके उनको ले जाने का कार्य कर रहै है वो --

स्वच्छ साफ सुथरा यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है।

यह मुस्लिम समुदाय का मस्जिद है।

अपनी अरदास पूरी करते है अपनी विनती यहाँ पर --

यह एक कॉलोनी है कॉलोनी में अलग-अलग यहां पर फ्लैट बना हुआ है लोग अपने-अपने हिसाब से यहां पर --

गाने गायिकी का काम हो रहा है यहाँ पर--

यह एक व्यायाम करने का कसरत करने का यहां --

ये एक गार्डन है जहाँ पर शाम के समय पर एक फाउंटेन बना हुआ है यह कलरफुल फाउंटेन है।